वन व्यक्ति ऑरेंज कलर की टीशर्ट पहने हुए हाथ में बाई --

इस पिक्चर में हमें एक बहुत बड़ा पर्दा दिखाई दे रहा है।

फुल बैग्स दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में।

पीछे टेंट में बहोत आगे --

वन बॉय स्टैन्ड के अंदर है। को --

एक छोटे-सा मकान दिखाई दे रहा --

और रेड कलर का ग्राउंड देखाइ दे रहा है इस पिक्चर में --

दीवार पर फोर फेन्स लगे हुए हैं।

एक किराना शॉप भी दिख रही है।

इस पिक्चर में ली आसमान नीला दिखाई दे रहा है।